जो सामने फेड्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के ए.टी.एम. की तस्वीर ले रहा है।

और यहाँ कुछ घर भी हैं जो दिख रहे है इस तस्वीर में।

इस तस्वीर में एक पुस्तक की दुकान दिखाई दे रही है जिसका नाम प्रभात स्टेशनरी --

इस तस्वीर में एक बंजर जमीन है जिसकी खुदाई हो रही है।

जिसमें कलर हुआ है और किसी में नहीं हुआ है और यहाँ पेड़ भी दिख रहे हैं हरे-भरे दिख रहे हैं।

यह इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है जो कि काफी पुराना है।

इस तस्वीर में कुछ भगवान कि प्रतिमाएँ दिख रही है।